और उधर क्लॉट्स वगेरा भी है और यह सरक बहुत ही खाली है और इधर पेड़ वेड भी है जो की हरा भरा लग रहा है और बोहत ही सुंदर और बोहोत ही अच्छा उधर एक आदमी खरा है ।

और इधर स्टेट बैंक एटीएम हैं जो कि तीनों एक साथ ही एटीएम हैं और ये अलग अलग ब्रांच में हैं और ये बहुत ही देखने में सब एक ही बराबर लग रहे हैं और सब ये सब एटीएम से पैसे निकले जाते--